साइड में छज्जा बना दिखाई दे रहा है।

आस पास बोहोत सारे घर भी लाइन से बने हैं।

पर हरे कलर का पोस्टर भी लगा दिख रहा है।

और नीचे का शीशे का दरवाजा लगा है।

बाहर एक बिल्डिंग है जिसमें तीनों फ्लोर पर बोर्ड लगे हैं।

ऊपर एक ऐ_सी भी लगा हुआ है।

इसके अंदर दो आदमी दिख रहे हैं।

ऊपर की तरफ बहुत सारे पंखे और लाइटें लगी दिखाई दे रही हैं।

एक तार भी लटका हुआ दिखाई दे रहा है।

इस पर एक सोफा और बहोत सारे गुलदस्ते रखे हैं।

एक औरत फोटो खींचती दिखाई दे रही है।

एक बड़ा सा पेड़ भी लगा हुआ है।

कुछ लोग आते जाते भी दिखाई दे रहे हैं।

प्लेट और गुलदस्ते टिशू पेपर भी रखा दिखाई दे रहा है।

सामने एक टीन की झोपड़ी भी बनी दिखाई दे रही है।

अलमारियों पर बहोत सारे कपड़े लगे हैं।

खिड़कियां भी लगी दिखाई दे रही है।

दीवार पे एक सीनरी लगी दिखाई दे रही है।

दीवार पे एक स्विच बटन भी लगा दिखाई दे रहा है।